इस फोटो में मुझे एक लड़की दिखाई दे रही है जिसने एक पीले कलर की टी -शर्ट पहनी हुई है एक दुपट्टा गले में डाल के रखा हैं।

फोर -जी का पोस्टर लगा हुआ है और नीचे एक बुक मार्क लिखा हुआ है पोस्टर पर --

निचे ग्राउंड मे घास दिखाई दे रही है एक आदमी दिखाई दे रहा है एक स्टूल रखा है।

इस फोटो मे मुझे एक खेत दिखाई दे रहा है उसमे बहुत सारे पौधे लगे हुए दिख रहे है एक छोटा सा खजूर का पेड़ दिखाई दे रहा है एक साइड मे नदी बनी हुई दिखाई दे रही है।

साइड मे कुछ बोतल रखी हुई दिखाई दे रही है एक हरे कलर की बोतल दिखाई दे रही है एक ऑरेंज कलर की बोतल दिखाई दे रही है साइड मे कुछ रखे हुए दिखाई दे रहे है।